श्री राम जानकी हनुमान मंदिर है। जो की काफी बहोत बड़ा है। हनुमान मंदिर है।

यह एक क्लासेस है यहाँ पे विकसित क्लास लिया जाता है ।

यार काफी सारे लाइट्स है काफी अच्छी डेकोरेशन बनाया गया हुआ है --